यह तस्वीर सरकारी केंद्र की दर्शाई गई है क्या मै आपको बता सकती हूं कि इस पिक्चर के द्वारा--

यहां पर बैंक के सामने रोड बनाया गया है साइड में--

इसमें अलग अलग ट्रेस में मिठाइयां अलग अलग तरह की रखी हुई दर्शाई जा रही है।

यह तस्वीर आकाशवाणी केंद्र की दर्शाई गई है।

यह चित्र कॉलेज की प्रिंसिपल ऑफिस का दिखाई दे रहा है।

बेचती हुई नजर आ रही है।

घर के नीचे ही जिम खोला गया है जिम के जिम के बाहर फिटनेस --

फिटनेस प्लानेट का बोर्ड दर्शायी दिया गया है यह जिम --

पकड़ा हुआ है गाड़ियों को खोल कर उसे ठीक किया जा रहा है यहां की गाड़ी खड़ी हुई गाड़ियों पर डेंटिंग पेंटिंग का काम किया जा रहा है।

बच्चों की चीजे फास्ट फूड जंक फूड --

यह तस्वीर ऑन रोड नजर आ रही है यह सड़क के किनारे बहोत बड़े बड़े हॉस्पिटल घर शॉपिंग कंपलेक्स --

अनुमान लगा सकते हैं की यह कंप्यूटर --

और यहां काटा पुटी भी काट पीट कर सामान बेचा जा रहा है।

नाव के अंदर बहोत सारे अ महिलाएं और पुरुष बच्चे अपने परिवार के साथ बैठे दिखाई--

ये तस्वीर है तस्वीर देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं।

यह तस्वीर बने हुए चौखटों की--

हां जोकि दर्साई गई है यह एक यह एक दुकान --

और बनी हुई चौखटों के दर दरवाजों की दर्शायी गई है।

और नाप के हिसाब से बेचा जाए।

यह तस्वीर हिल स्टेशन की दर्शायी गई हैं जैसा कि आप पिक्चर देख कर ही समझ सकते हैं।

ड्रॉइंग के पीरियड में आर्ट एंड क्राफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग बेंचेस पर बैठे हुए--

और आर्टिकल्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं अध्यापिका उन्हें समझाते हुए--

साइड में पंडित प्रसाद बाटते हुए नजर आ रहे हैं।

तस्वीर गाड़ी के गराज की नजर आ रही है।